जो की इस मंदिर में एक ब्लैक कलर की तार और नीचे एक पाइप भी जा--

और इसमें एक नीला गुब्बारा लगा हुआ है और इसपे एक स्टीकर है गेट पे और एक इधर बैलून लगा हुआ है।

इस दुकान पे बहोत सारे अंडरवियर के बॉक्स रखे हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है इसमें काफी लकड़ी की चेयर रखी हुई है और इसमें कुछ टेबल है काफी मतलब चार टेबल हैं और एक लोहे का--

इन पे भी कुछ किताब रखी हैं और इसमें एक गेट है जो कि कांच के शीशा का बना है और एल्यूमीनियम लगा हुआ है उस गेट में और इसकी--

और इस टेबल की चारो ओर कुर्सियां भी है इस टेबल पे एक जग है।

यह एक रोड है जिस पे दो मकान है और एक मकान में काफी सारी एल_इ_डी लाइट लगी हुई है।